यह एक कत्थक मंच है यहां पर एक औरत कत्थक नृत्य --

नकली जिसकी मूर्ति है सफेद रंग की और बहोत सारे आदमी हैं उसपे बैठे है बच्चे --

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्रिकेट वगैरा खेल रहे हैं इस मैदान के बाहर एक बिल्डिंग बन रही है।

यह एक स्विमिंग पूल है यहाँ पर स्विमिंग पूल के बाहर दिवाल लगी हुई है।

एक सीढ़ियां दिखाई दे रही है कुर्सी टेबल दिखाई दे रही हैं।